और कार्यालय का रंग लाल और सफ़ेद दिखाई दे रहा है।

सभी बसों का कलर लाल है बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इस फोटो में कार्यालय दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कुछ लोग हैं।

ऊपर खुला आसमान है नीचे खा- ली सड़क दिखाई दे रही है।

इस फोटो है में पेट्रोलपंप दिखाई दे रहा है एक ट्रक वहाँ खड़ा है और पेट्रोलपम्प के पास एक--

क्लिक करवा रहा है दुकान में कुर्सियां भी रखी हुई है।

इस फोटो में एक रथ दिखाई दे रहा है।